यह एक जिम का फोटो है।

और यहां पर ऊपर शीशे में लाइट भी दिख रही है।

और यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

और सामने हरी हरी घास पहाड़ों पर आ रही है।

नीचे कुर्सियां रखी हैं और एक टेबल लखी है।

टेबल के ऊपर एक शीशी रखी है नीले कलर की।

वहां पर हिरन नजर आ रहे हैं और पेड़ खड़े हैं बड़े।

और गंगा में स्नान कर रहे हैं।

और यहां पर नीचे व्हाइट टाइल लगी हुई है।

यहां पर लाइट भी जल रही है बहोत सी।

और साइड में हरी लाइट भी जल रही है और सफेद लाइट भी जल रही है।

और कुछ लोग यहां पर पोस्टर लिए खड़े हुए हैं।

जहां पर बड़ी बड़ी मशीने रखी हुई हैं।

और नीचे कुछ बॉल्स पड़ी हैं जो नीले कलर की है।

और मशीन के ऊपर डंबल भी रखे हुए हैं।

और बहोत से गमले रखे हुए हैं।

और यहां साइड में ग्रिल भी लगी हुई है और सीढ़ियां बनी हुई है।

यहां पर पोस्टर भी लगे हुए हैं।